ये इस तस्वीर में योगा क्लास नजर आ रही है कुछ लोग बैठे हुए योगा करते हुए नजर आ रहे एक आदमी--

और ऊपर झंडे लगे हुए है एक आदमी मोबाइल फोन पे बात करता हुआ जाता हुआ नज़र आ रहा है।